कोई नीला है कोई गुलाबी है तो कोई पर्पल है।

और ऊपर चार लाइट बल्ब दिख रहा है।

उसके बगल में दो बॉटल है पानी का और एक जग है।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारा लाइट बल्ब दिख रहा है और चेयर दिख रहा है और टेबल दिख रहा है।

और खेलने के लिए नेट भी दिख रहा है।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारे बच्चे योगा करते हुए दिख रहे है।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

और चारो ओर ग्रास ही ग्रास है।

यह तस्वीर मेडिकल का है जिनमें तीन बीमारी इंसान लेते हुए हैं और सब ने वेंटीलेटर लगाया हुआ है।

पलंग पर एक पिंक कलर का कंबल है और व्हाइट कलर का बेडशीट ।

सफेद लाल हल्दी कलर का जर्सी पहना हुआ है।

यह तस्वीर एक रूम के अंदर लिया गया है।

ये रेलिंग भी लगा हुआ है।

और साइड में मुझे सफेद कलर का पॉड भी दिख रहा है।

कोई हारा है कोई ऑरेंज है कोई लाल है कोई गुलाबी है।

महिला कुछ लिख रहा है।

और दीवार पे कुछ सजाया गया है।

और यहां पे दरवाजा भी दिख रहा है जिसमें येलो कलर का कपड़ा बांधा हुआ है।

और फ्लोर व्हाइट कलर का है।

और एक सोफा काला कलर का है।

दरवाजे के ऊपर धार्मिक तस्वीर लगी हुई है।

और इसके पीछे बहोत सारा जंगल भी दिख रहा है।

और वॉल पे बहोत सारा तस्वीर लगाया हुआ है।

यह तस्वीर एक जिम के अंदर लिया गया है।